और सामने से एक बड़ा सा गार्डन है जिसके ऊपर पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

एक बड़ी सी क्लास है जिसमें खूब सारे बच्चे बैठे हुए हैं कोपी लेकर और सामने एक सर है जीने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है।

एक बड़ा सा गार्डन है जहाँ गन सारे बच्चे बैठकर ड्राइंग बना रहे हैं। वो भी हरी घांस पर बैठकर और सामने से एक अंकल विडियो बना रहे हैं।

ग्रीन एंड पिंक फूल लगे हुए हैं और साइड में रेड कलर के फूल लगे हुए हैं ।

बहोत बड़ी बर्फीली जगह हैजहाँ पर सब के सब एन्जॉयमेंट कर रहे हैं।

नीचे चड़ा पहना है और दो रिक्शा है जो बैटरी वाले हैं उनका रेड एंड येल्लो कलर है।